बहोत सारे आदमीन भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग का दिवार सफेद और लाल रंग का है।

बोर्ड भी टांगा गया है और यहां पे रूम में खिड़कियां है खिड़कियां में परदा लगाया गया है।

दुकान में बहुत सारा सामान रखा गया है और दुकान में लाइट भी लगाया गया है।

यहा पे बिल्डिंग के आसपास बहुत सारा घास दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा काउंटर भी लगाया गया है। काउंटर में बहुत सारा सामान रखा गया है।

यह एक बहुत बड़ा दुकान का रूम है इस रूम का दीवार सफेद है और इस रूम में लाइट भी लगाया गया--

बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़ पौधे भी हैं।

बाहर में भी टाइल्स लगाया गया है।

यह एक रूम है रूम का दीवार सफ़ेद है और रूम में काउंटर लगाया गया है।

नीचे में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया गया है और रूम के दीवार में बैलून भी टांगा गया है।

रूम में लाइट भी लगाया गया है और रूम में बहुत सारा जिम करने वाला सामान रखा गया है।

और इस बिल्डिंग में रेलिंग भी लगाया गया है और बिल्डिंग के बाहर आदमीन भी दिखाई दे रहा है।